जो वो पहाड़ पे से आ रहा है पानी जो नीचे और यहां पे एक बैग रखी हुई है।

टेबल है और यहाँ पे डस्टबीन है जो ग्रीन कलर का है।

वेरी बैग पूड़े यहां पे मसाले के--

और चिप्स के पूढ़ा भी हैं चिंग्स है यहां पे मसाले हैं।

यहां पे है दुकान जो लिखा हुआ है बैंक ।

यहाँ पे स्कूल है और स्कूल के बच्चे ठहरे हुए है जो बॉयज है यहाँ पे वाइट कलर के कपड़े है जो स्कूल का --

और झंडा है झंडा चलाए यहां पे राष्ट्रगीत कर रहे है जो--

सलाहे बिछाये हुई है और उसके ऊपर है जो यहां पे सीमेंट बालू का इस्तेमाल कर रहे हैं।

और यहाँ पे गाड़ी धरी है फोर व्हीलर और पल्सर है यहाँ पे।

और यहां पे आसमान में बादल नजर आ रहे हैं और यहां पे मिट्टी का ढेर है।

लाइटिंग चालू है मीटन दिखाई दे रहा है बाजू में।

यहां पे पानी है जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है और यहां पर औरतें हैं जो पानी में उतर के कपड़े धो रहे हैं आदमी भी है कपड़े धो रहे हैं और यहां पे--